यह एक मोबाइल शॉप है।

यह एक ऑफिस का पाड़किंग एरिया प्रतीत हो ड़हा है।

कतार में दूर तक नजर आ रहे--

यह कोई प्लस टू कॉलेज प्रतीत हो रहा हैं यहं एक उच्च विद्यालय है।

जिनका ओपनिंग ऐसा प्रतीत हो रहा है।

बच्चों से लेकर बड़े तक सभी के रेडी मेड कपड़े मौजूद हैं।

और बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े मौजूद हैं।

और सामने कोइ शॉप प्रतीत हो रहा है यहां कुछ बाइक पार्क की गई है।

अच्छी और क्वालिटी की टी शर्ट बेची जा रही है यहां पे बहुत सी लाइटिंग लगी हुई है।

कहीं जाने के लिए टिकट बना सक--

प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रतीत हो रही है बाहर की तरफ बहुत सारे बाइक पार्क किए गए हैं।

यहाँ पे एक सेल्समैन उन्हें अलग अलग प्रकार की पेन दिखा रहे हैं उनके बगल में--